कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है लाइट लगी हुई उस मे--

फोटो निकलाते वो सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है झाकी मे नीचे ये फोटो ने--

सामरुदा पडा हुआ फ्रेम बनी हुई रखी है लकड़ी की --

उधर रखे हुए काऊंटर के पास मे सुंदर सी बड़ी सी एक दुकान दिकाई दे रही है।

एक जेन्टस वहाँ खड़े हुए हैं लेडीज बैठी हुई है ये मशीने रखी हुई है बर्तन रखे हुए हैं ये--

और एक जेन्टस पिछे बैठे कुछ लिखते हुए दिखाई दे रहै है।

ये गेट दिख रा सामने मे बैग के पास मे कांच दिखाई दे रहा है।

ये एक बिल्डिंग दिख रही --

अ डीपि ट्रान्सफर लगा रहा हुआ दिख रहै है।

गाड़िया रखी हुई है दुसरी साइड मे ये बड़ी बड़ी सी मल्टी --

छोटी सी पत्थरों से मूर्तियां बनी हुई है।

ये किताबो की एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही हैं।

पुरे मे लंबा हॉल सा हैं ये इसमे गोल-गोल खंभे से--

जिसमे ये मूर्तीया बनी हुई रखी है करो नीचे ये मूर्तीया बनी हुई रखी दिखाई दे रही है।

पेड़ लगे हुये है मलकिंग के पास --

मे ये भगवान बुद्ध की मूर्ती भोलेनाथ की मूर्ती दिख रही है।